यहां पर हम देख सकते हैं एक बड़ा सा मंदिर है।

और सामने बहुत बड़ी सी एक रास्ता भी है और दूर में एक बिल्डिंग --

और यह कुछ नगर में है। विद्यलय के सामने एक आदमी चल रहे हैं।